दिखाई दे रहा है चारों तरफ लाइट और सी_सी कैमरा लगे हुए हैं।

और इसमें चारों तरफ लाइट ला--

जहां बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं।

यहां बहोत सारे बाइक खड़े नजर आ रहे हैं।

और यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी--